जिसके अंदर बसें सारी खड़ी हुई है रेड और वाइट कलर की है ग्रीन और वाइट कलर की है सारी।

योगा का यह फ्लोर लग रहा है जिसमें सभी हाथ ऊपर किए हुए हैं सभी के कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं।

गाय की यह फोटो है जिसमें बछड़ा गाय का दूध पी रहा है एक गाय उधर बैठी है।

यह एक किले का फोटो दिख रहा है जिसमें कि बहुत ही सुंदर अह अह व्यू लग रहा है बेड़िया हैं।

जो की हमे मैसेज दे रहे है और व्हाइट कलर से भी कुछ कलर किया हुआ है कपड़े सूख रहे है।

होटल का यह फोटो है जिसमें कि ब्राउन ऊपर छत बना हुआ है व्हाइट कलर है लाइटिंग फिट है उसमें चेयर्स हैं टेबल्स हैं।

होटल का और येलो कलर का भी दीवार है।

चिड़िया घर नाम से लिखा हुआ बोर्ड हैं बेकाने लिखा हुआ हैं जिसमें ब्राऊन कलर के इसमें खंबे टाइप बने हुए हैं यह गेट --

यह एक वर्कशॉप की फोटो है इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसमें फ्रिज वाशिंग मशीन गोदरेज --

हे और लाइटिंग भी लगी हुई है वाइट कलर की है।

और ये पास में शटर है जो कि बंद है बाहर एक आदमी खड़ा है बाइक लिए हुए उसके ऊपर--

एच_आर ज्वैलर्स एंड संस के नाम से यह ज्वेलरी शॉप है जिसके बाहर एक --

होटल का यह पिक है जिसमें की बहोत सुंदर ये डेकोरेशन किया हुआ है।

मौसम भी साफ है और नीट एंड क्लीन रोड दिखाई दे रही है एक आदमी का फोटो आधा आया हुआ दिखाई दे रहा है।

केले को फोटो लग रही है जिसके अंदर एक आदमी का हाथ आया हुआ है जिसमें चाट और प्लेट --

भगवान हनुमान जी का यह फोटो है जिसके ऊपर माला चढ़ाई हुई है एक पास में थैला पड़ा है।

चाइना गेट है जिसका कलर ब्लैक है पास में भगवान के एक थाली है जिसमें प्रसाद चढ़ाया हुआ है।

गार्डेन का यह फोटो है जिसमें नाईट का व्यू दिखाया हुआ है ग्रीन कलर की चेयर भी पड़ी है।

और रोड पे टेम्पो आते हुए दिखाई दे रहे है और टैक्सी भी आ रही है।

फोन आया हुआ है इस फोटो के अंदर जो कि क्लिक कर रहे हैं।